वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

साड़िया मिलते है वह भी खाली थे वह पीछे जाते है।

यहां पे बहोत सारे सायकल पार्क किए हुए हैं जैसे कि एक दो--

जोकि बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।

ब्लैक पेंट व्हाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नो दस ग्यारह बारह मछलियां पड़ी हुई है।

यह नदी किनारे या समुद्र किनारे एक दो तीन पेड़ पौधे लगे हुए हैं वह पत्थर भी हैं यहां से सनसेट का अभाव दिख रहा हैं।

ट्रेन आना जाना करती है। वह यह एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है।